और दुकान भी देखने को मिल रहा है दुकान भी यह ब्लू कलर में पेंट करके है और इसमें साइड में भी--

और इसमें पिंक और व्हाइट कलर में लाइट को भी बहोत देखने को मिल रहा--

अंदर से एक बल्ब भी जल रहा है।

ये कुछ कंस्ट्रक्शन का यहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

विंडो भी देखने को मिल रहा है और जंगल भी दिख रहा है।

और उसमें साइड में एक गाड़ी को भी देखने मिल रहा है और एक बड़ा सा होल भी देखने को मिल रहा है।

इसमें एक दरवाजा देख रहे विंडो दो देखने को मिल रहा है।

फैन भी देखने को मिल रहा है लाइट भी देखने को मिल रहा है।

कई टायर भी देखने को मिल रहा है।

रूम भी बहोत साफ सीन और विंडो भी दीग दिग रहा एक अल्मीरा भी दिग रहा है।

येलो कलर में रेड कलर में पिंक कलर ब्लैक कलर पुर व्हाइट कलर पूरा तरह कलर देखने को मिल--

उसमें कलर भी व्हाइट ब्लैक देखने को मिल रहा है।